आ_सी भी लगा हुआ है एक दम दो आदमी भी है यहां पर और ऊपर से देखा है लाइट का व्यवस्था भी परफेक्ट --

बड़ा सा एकदम पेट्रोल पंप है यहां पे आदमी लोग भी खड़े हैं और बहोत लोग यहां पे--

पिछे एक दम हरा भरा पेड़ है देख सकते हैं बड़ा बड़ा लंबा पेड़--

आपका यहां पे एकदम दुकान है बड़ा सा एकदम देख रहा है एकदम हॉल टाइप का दुकान है ठंडा भी मिल रहा है स्प्राइट --

देख सकते हैं बड़ा सा पेट्रोल पंप है और यहां पे ट्रैक्टर और बाइक--

सात दिन एक सप्ताह में सात दिन होता सातों दिन ये चौबीस घंटा खुला रहता मतलब हर समय हर टाइ --

ज्यादा हो जाता है तो इस साइड बाहर निकल जाता है यहां पे सात को वो वो है आने पानी आने का रास्ता।

जनरल स्टोर इसके दुकान के सामने लिखा हुआ है और यह दुकान में एक पंखा भी आगे टंगा हुआ है और बाहर देख रहे हैं झाड़ू वाडु भी है।

ये देख रहे हैं बड़ा सा जगह है ये एक सब्जी मंडी है जैसे सब्जी बाजार लगता है न--

और उधर पहार वहार भी है एक गारी भी लगा है उधर दो चार इंसान भी खड़े हैं आप लोग देखिए।

लाइटिंग है और नीचे में देख रहे है बिछा हुआ उसको क्या बोलते हैं --

लग रहा है बच्चा लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है सबका देख रहे है पढ़ाई पे ही ध्यान है यहाँ पे आप लोग देख ही सकते है कोई पेन चला रहा है कोई --